दूसरी तरफ एक डंडा खड़ा है और व्हाइट रंग टंकी लगी है--

रैक में कुछ छोटे बड़े डब्बे रखे गए हैं और गद्दे भी डब्बे भी है एक बाल्टी--

जहां पर बीच में शावर चल रहा है।

यहां पर एक टेबल रखा गया है।

और सामने दो कुर्सियां रखी हैं कॉर्नर में गुलदस्ता पड़ा है।

ये फोटो एक ऑफिस की है।

यहां पर दो सोफे रखे गए हैं।